यहां पे कुछ साइकिल दिख रही है यहां बगल में लाइट जल रहा है एक फैन दिख रहा है।

यहां पे एक बोरवेल का दृश्य दिख रहा है।

के अंदर लोहे के पाइप रखे हुए है।

पोस्टर पे दुल्हन लिखा हुआ है और राधा लिखा हुआ है और लड़की के चित्र बने हुए हैं।

नीचे में तीन साड़ी का दृश्य दिख रहा है जो प्लास्टिक में पैक है यहां पर एक बल्ब दिख रहा है।

ऊपर में एक फैन दिख रहा है यहां लाइट जल रहे हैं।

है उसके बगल में एक महिला दिख रही है और एक आदमी दिख रहा है।

एक आदमी के पीछे बैग दिख रहा है यहां पे कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

यहां पे बगल में कुछ पाइप दिख रहे हैं यहां पे एक ऊपर बाल्टी रखा हुआ है।

यहा पे एक घर का दृश्य दिख रहा है घर के बगल मे एक पोस्टर टंगा हुआ है जिसपे सी_एन_जी के_आई_टी लिखा हुआ है।

यहां पे लोहे के डंडे लगे हुए है जो ब्लू कलर के है ऊपर में खिड़की दिख रहा है।

यहां पे कुछ कॉपी रखे हुए है कुछ पेन दिख रहे है कुछ प्लेट दिख रहे है कुछ झोले रखे हुए दिख रहे--

यहां पे एक गार्डेन का दृश्य दिख रहा है।

गार्डन के अदंर एक गमला का दृश्य दिख रहा है गमला के ऊपर मिट्टी दिख रहा है।

यहां एक बाइक दिख रहा है उसके बगल में एक टेबुल दिख रहा है उसके बगल में एक छोटा टेबुल है।

यहां पे तीन चार महिला महिला दिख रही है एक पुरुष दिख रहा है।

उसके बगल में कुछ कुछ पौधे दिख रहे हैं।

के अंदर एक दरवाजा का दृश्य दिख रहा है उसके बगल में एक खिड़की दिख रही है।

यहां पे चार कुर्सी दिख रही है बगल में एक टेबुल है टेबुल के ऊपर पानी पीने का चा तीन बॉक्स दिख रहे हैं।

यहां पर एक गाड़ी का दृश्य दिख रहा है।

यहां पे दो बाइक दिख रहा है पीछे में पाइप दिख रहा है।

प्लास्टिक के अंदर बल्ब दिख रहा है यहां पे कुछ स्विच बोर्ड दिख रहे हैं।